ना की जो पाँच छे जने हैं उन्होंने रेड कलर का ड्रेस डाल रखा है। एक ने सिर पे कैप लिया हुआ है और पीछे डेकोरेट किया हुआ मंदिर बना हुआ है।

पर सामने कोई रेल वेल नहीं आ रही है । दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोई पब्लिक वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा है।

सामने जो सामने जो नजर आ रहा है अंदर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ है और बाहर एक जिओ का बोर्ड लगा हुआ है। उस जिओ के बोर्ड पे लिखा है गंगापुर मल्टीस्पेशलिस्ट ।